और कुछ संगीत कर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जो वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं।

हमें घर पर एक बोर्ड दिख रहा है जिसमें दीक्षा कॉमर्स कोचिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है।

हमें कुछ बच्चे अलग-अलग स्टेप करते हुए नजर आ रहे हैं और एक पुरुष उनका प्रशिक्षक वह भी खड़ा हुआ है।

साथ ही कुछ व्यक्ति उस हाथी पर पानी का छिड़काव कर रहें हैं।

वहाँ पर बहुत सारी भीड़ कुर्सियों पर बैठी नजर आ रही है।

किनारो पर हमे हरी-हरी लह लहाती घास नजर आ रही है साथ ही मे हमे विशाल चोटी वाला टापू नजर आ रहा है जिसपर चारो ओर से व्रक्ष लगे हुए है।